हम इस तस्वीर में देख रहे है यह जो तस्वीर है ये तस्वीर एक जैसे कि एक दुकान है। जिस दुकान में मूर्ति रखी है और वहां पर --